राइट साइड काफी सारे तार गए हुए हैं जो कि घरों के साइड के यहाँ लेफ्ट में काफी सारे ऊपर पेड़ निकले है पहाड़--

ब्रिज के एंड में एक बड़ा सा कमरा बना हूआ है जिससे वहाँ से नीचे से निकलते हैं और काफी सारे घर दिख रहा है आस पास और पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ऊपर बहोत बड़े ऊँचा सा पहाड़ दिख रहा है। गा--

ये एक नदी है जिसपे देख रहे हैं की यहाँ पे उसकी ऊंचाई पे काफी सारे पत्थर वथर पड़े हुए हैं अच्छी रोड है ये।

ये एक नदी गई है जो कि दो पहाड़ों के बीच से होते हुए जा रही है और ये काफी खूबसूरत लग रही है।